पिंक और इसमें छोटी - छोटी पहाड़े नजर आ रही है जो ब्लू कलर के हैं और इसके आकाश का कलर वाइट कलर का हैं।

इस इमेज में हमें सामने एक बगुला दिखाई दे रहा है जो सादा कलर का है और कुछ बत्तके दिखाई दे री है जो ब्लैक कलर के है और कुछ पानी दिखाई दे रही है जो ग्रे --

इस इमेज में हमें सामने ढेर सारी फूल के ग्लास नजर आ रहै है इसमें ढेर सारे फूल भी नजर आ रहै है जो रेड येल्लो पिंक वाइट और --

इस इमेज में हमें सामने कुछ गार्डन जंगल नजर आ रहे है जो कलर और ब्लैक कलर के है इसमें कुछ पेड़ - पौधे भी नज़र आ रहे है जो ग्रे और ग्रीन कलर के है इनकी डालियां --

इस इमेज में हमें एक आदमी नजर आ रहै है जो वाइट येल्लो और ऑरेंज कलर के कपडे पहने है और और हाथ में वाइट कलर के ग्लब--

इस इमेज में हमें एक बड़ी- सी गार्डन नजर आ रही है जो ग्रीन कलर के पेड़ -पौधे है और इसमें कुछ जमीन के कलर है ग्रीन - ग्रीन मिट्ट --

मिटटी कलर पिंक और ग्रे और कुछ छोटे - छोटे पेड़ - पौधे भी नजर आ रहै जो ग्रीन कलर के है और इसके घास कलर ग्रीन ग्रे --

इस इमेज में हमे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है ढेर सारे लोग दिखाई दे रहै है सब रंग-बिरंगे कपड़े पहने जैसे वाइट ब्लैक और मैरून और--

पत्थर की चट्टानें है जो ग्रे कलर के है उसके जमीन के कलर भी ग्रे है पिंक है और मिटटी कलर हैं और ग्रीन कलर है और कुछ --

कुछ डालियाँ भी नज़र आ रही है जो ग्रे कलर की है इसमे जमीन के कलर भी ग्रीन है।

कलर का है इसमें कुछ-कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रे और ग्रीन कलर के है कुछ झूले दिखाई दे रहै है जो ग्रे और मिटटी--

इस इमेज में सामने हमें एक टेंट दिखाई दे रहा है जो ग्रे और मिट्टी कलर और ग्रीन कलर के है और सामने कुछ पाइपे नजर आ रही है जो ब्लैक कलर के है कुछ --

इस इमेज में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है जो हरा रंग का है इसमें कुछ खिड़कियां नजर आ रही है जो शीशा के है वाइट कलर के इसमें कुछ पर्दे नज़र आ रहे हैं जो --

मैरून कलर की है और इसमें कुछ लाइट लगी हुई है जो वाइट कलर की है और इसकी खिड़कियां की कलर वाइट है उसमे कुछ कुछ सामाने रखी हुई है जो रंगबिरंगी है।